हैं जिसका कलर अ ब्लू है जो बहोत सुंदर लग रहा है। कुछ रेल लाइट की पटरियाँ दिखाई दे रही हैं। पीछे कुछ अदर व्यक्ति हैं।

यह एक होटल का दृश्य लगता है जिसमें बहोत से कुर्सी लगे हुए हैं। एक बहोत इक्स्पेन्सिव दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत से अ ग्लास लगे हुए हैं। ऊपर एक ग्रिल लगी हुई है।

यहाँ पर एक बोहोत बड़ा घर दिखाई दे रहा है जिसका बोहोत बड़ा गेट भी है। आगे दो बैनर लगे हुए हैं तथा इसके नीचे जाने का भी रास्ता है। नीचे एक खटिया दिखाई दे रहा है।

कुर्सियों का कलर चॉकलेटी कलर का है। ऊपर ऊपर की दीवाल का रंग सफ़ेद तथा लाल है। कुछ लकड़ी का फर्निचर रखा हुआ है।

यहाँ एक दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ बोहोत लड़के खड़े हैं तथा कुछ महिलायें भी खड़ी हैं एक पुरुष खड़ा हुआ है।

आगे कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं। अंदर एक बॉडीगार्ड जैसा लगा हुआ है। ऊपर बहोत हरे-हरे पोधे दिखाई दे रहे हैं। हल्का आसमान भी दिखाई दे रहा है। एक दीवाल दिखाई दे रही है जिसका रंग हरा है।

कुर्सियां लगी हुई है तथा एक टेबुल लगा हुआ है। टेबल का कलर लकड़ी के कलर का है।

आगे एक बोहुत विशाल घर दिखाई दे रहा है जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है। ऊपर कुछ लिखा गया है। आगे बोहुत

कोई यहाँ यहाँ पर कुछ गंदा भी हो सकता है। बोहोत दूर तक छोटे-छोटे पह बादल दिखाई दे रहे हैं तथा कुछ छोटे-छोटे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

यह एक नदी के की किनारे का द्रश्य प्रतीत होता है। जिसमे हरे-हरे कलर के अ साइड में घास उगी हई है। एक हरे कलर का पौधा भी उगा हुआ है।

यहाँ पर एक पीले रंग का बोहोत बड़ा अ घर दिखाई दे रहा है। जिसका एक गेट दिखाई दे रहा है। गेट के कलर का रंग ब्लू है उसके ऊपर कुछ लिखा गया है। आगे एक लकड़ी का गेट लगा हुआ है। ऊपर कोई ईट की दीवाल भी लगे हुए है कुछ --